इस ट्यूटोरियल में हम sbhs की मुख्य विशेषताएं देखेंगे
sbhs की ब्लॉक डायग्राम व्याख्या
singleboard heater system को संक्षिप्त में sbhs कहा जाता है
यहmicrocontroller पर आधारित डिब्बेमेंप्रयोगशाला यानि labinabox तापमान नियंत्रक सेटअप है
सेटअप को स्नातक और स्नातकोत्तर के control कोर्सेज़ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है
यह निम्न सिद्धांतों के चरों तरफ़ घूमता है: electronics
serial port communication
microcontroller programming
data acquisition interface
control theory
ये सिद्धांत इसके विकास के लिए बुनियादी आधार की तरफ कार्य करता है
आगे हम sbhs की मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करेंगे
sbhs इसके हार्डवेयर डिज़ाइन और open source की तरह जारी कोड्स के साथ 3000 रूपए का यंत्र है
तथापि ध्यान दें खरीदते समय उसका वास्तविक मूल्य भिन्न हो सकता है
एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर sbhs को इंटरफ़ेस करने के लिए उपयोग किया जाता है
अधिक जानकारी sbhs dot os hyphen hardware dot in से देखीजा सकती हैं
इसके आलावा यह लगभग 1 मिनट का एक छोटा time constant रखता है
अतः कोई भी 10 मिनट में उचित परिक्षण का सकता है
यह सेटअप virtual labs project के अंतर्गत रिमोट एक्सेस के लिए भी उपलब्ध है
कोई भी इसे दूर से एक्सेस कर सकते हैं और ये कैसा है जान सकते हैं
आगे यूज़र इसे खरीद और असेम्बल कर सकता है और इसे कॉलेज में या घर पर लैब कि तरह सेट कर सकता है
चित्र single board heater system का पिक्चर दिखाता है
यह निम्न रखता है: 12 वोल्ट की नियंत्रित dc पॉवर सप्लाई उत्पन्न करने के लिए smps
एक मेटल का ब्लेड और एक हीटर कॉइल इस मेटल सपोर्ट के नीचे स्थित होता है
एक कंप्यूटर फैन एक डिस्प्ले
usb और rs232 ports
अब हम sbhs का ब्लॉक डायग्राम देखेंगे
चित्र sbhs का ब्लॉक डायग्राम दिखाता है
इसमें पॉवर सप्लाई
8bit microcontroller
डिस्प्ले फैन
हीटर असेंबली टेम्परेचर सेंसर
उपकरण एम्पलीफायर और सम्बंधित सर्किट
isp सीरियल और usb पोर्ट्स होते हैं
अब हम sbhs में विभिन्न ब्लॉक्स की संक्षिप्त व्याख्या देखेंगे
सबसे पहले हम पॉवर सप्लाई देखेंगे
पॉवर सप्लाई मूलतः 12v 400 watt smps होती है
यह 12v सप्लाई सीधे उपयोग की जाती है लेकिन ज़्यादातर सर्किट को 5v सप्लाई की ज़रुरत होती है
अतः जहाँ भी आवश्यकता हो अलगअलग वोल्टेज नियंत्रक उपयोग किये जाते हैं
पॉवर सप्लाई की अस्थिरता के कारण किसी भी अस्पष्ट टेम्परेचर को रोकने के लिए सिस्टम्स और सेंसर्स के लिए वोल्टेज नियंत्रक अलगअलग रखे जाते हैं
अगला microcontroller है
एक 8bit atmega16 microcontroller उपयोग किया जाता है
microcontroller बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है
यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से sbhs पर उपस्थित प्रत्येक एकल हार्डवेयर को नियंत्रित करता है
यह विभिन्न कार्यों को संचालित करता है: कंप्यूटर और sbhs के बीच संचार व्यवस्था सेट करना
हीटर कॉइल से पास होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को नियंत्रित करना
फैन की गति को नियंत्रित करना
टेम्परेचर की वैल्यू को पढ़ना
पैरामीटर वैल्यू को दिखाना और अन्य विभिन्न आवश्यक ऑपरेशन
आगे हीटर और फैन पर आते हैं
हीटर असेम्बली nichrome के तार की कॉइल से लगभग 35 mm दूर स्थित मेटल प्लेट रखता है
जब विद्युत धारा कॉइल से पास होती है तो कॉइल ऊष्मित होता है
यह ऊष्मा संवहन से मेटल प्लेट को उसका तापमान बढ़ाते हुए स्थानांतरित की जाती है
उपयोगित फैन एक छोटा सामान्य कंप्यूटर फैन है
यह ऊष्मित मेटल प्लेट को ठंडा करने में उपयोग होता है
कुछ परीक्षण करके देखे गए कारणों की वजह से यह हीटर के नीचे स्थित है
आगे driver ब्लॉक पर आते हैं
यह बस एक यंत्र है जो फैन और हीटर को दी गयी पॉवर की मात्रा को परिवर्तित करता है
mosfets उसी के लिए उपयोग किया जाता है
mosfets microcontroller द्वारा दी गयी कमांड्स के अनुसार संचालित किया जाता है
ये mosfets वास्तव में कुछ pwm frequency पर स्विच किये जाते हैं
अब हम temperature sensor के बारे में बात करेंगे
ad590 वो temperature sensor है जो ऊष्मित प्लेट के तापमान की सेंसिंग के लिए उपयोग किया जाता है
इस सेंसर का आउटपुट micro ampere per kelvin में है
ऑपरेटिंग तापमान की रेंज 55 से 150 डिग्री सेल्सियस है
इसके आलावा इसे linearization की किसी अगली प्रक्रिया की ज़रुरत नहीं होती है
आगे हम instrumentation यानि उपकरण एम्प्लीफायर देखेंगे
उपकरण एम्प्लीफायर ad590 द्वारा उत्पन्न सिग्नल के signal conditioning के लिए उपयोग किया जाता है
यह तापमान सेंसर के लिए अच्छी इनपुट प्रतिबाधा भी देता है
अतः signal conditioning के दौरान सेंसर द्वारा उत्पन्न सिग्नल कमज़ोर नहीं होता है
डिस्प्ले और इंडीकेटर्स ब्लॉक
डिस्प्ले 16x2 lcd डिस्प्ले बनाता है
जिसका मतलब है डिस्प्ले 16 कैरेक्टर्स वाली दो लाइनें दिखाने में सक्षम है
चूँकि यह ख़ुद का इनबिल्ट नियंत्रक रखता है तो किसी अलग नियंत्रक की ज़रुरत नहीं है
यह विविध पैरामीटर्स जैसे temperature fan heater और machine id mid दिखाने में उपयोग किया जाता है
यह 4bit mode में संचालित किया जाता है
इंडीकेटर्स में विविध onboard leds होती हैं
आगे हमारे पास serial voltage level converter ब्लॉक है
यह serial से ttl और विपरीत क्रम में भी सिग्नल्स के रूपांतरण के लिए उपयोग किया जाता है
अगला हमारे पास usb से serial converter ब्लॉक है
यह usb से serial और विपरीत क्रम में भी सिग्नल्स के रूपांतरण के लिए उपयोग किया जाता है
अगला हमारे पास usb और rs232 ब्लॉक्स हैं
यह usb और rs232 केबल को जोड़ने में उपयोग होता है
अंत में हमारे पास isp ब्लॉक है
isp का मतलब insystem programming है
यह वास्तव में 10 pin male connector है
इससे हम उचित प्रोग्रामिंग यंत्र की मदद से microcontroller को रोग्राम कर सकते हैं
यह हमें introduction to single board heater system पर स्पोकन ट्यूटोरियल के अंत में लाता है
इसे सारांशित करते हैं
इस स्पोकन ट्यूटोरियल में हमने sbhs की मुख्य विशेषताएं और ब्लॉक डायग्राम व्याख्या देखी
विविध ब्लॉक्स की व्याख्या की जैसे power supply
microcontroller heater और fan
driver temperature sensor
instrumentation amplifier display
usb & rs232 ports isp
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें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
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम: स्पोकन ट्यूटोरियल्स उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है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
अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spokentutorialorg पर लिखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती you धन्यवाद